एक लड़की आते हुए दिखाई दे रही है सामने बहुत सारे पेड़ --

बालकनी बनी हुई दिखाई दे रही है रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है साइड में एक--

आस-पास बहोत सारी पेड़ लगी हुई दिखाई दे रहे है ।

और जमीन पर दिखाई दे रही --

टंकी रखी हुई दिखाई दे रही है आस-पास पेड़ दिखाई दे रहे है।

यही एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

पंडित जी मंदिर के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं एक पलंग डला हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं मोटरसाइकिल रखी हुई दिखाई दे रही हैं आसपास पेट दिखाई दे रहे हैं।

गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है एक खिड़की --

खेत सा दिखाई दे रहा है एक झोपड़ी बनी हुई दिखाई दे रही है।

बोतले राखी हुयी दिखाई दे है।

इमारत में बहुत सारी खिड़की बनी हुई दिखाई दे रही है।

दुकान में एक आदमी मुंह पर मार्क्स लगाए खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

साइड में एक और दुकान दिखाई दे रही है जिस पर दो आदमी बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

दुकान दिखाई दे रही है दुकान बंद दिखाई दे रही है।

दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर एटीएम लिखा दिखाई दे रहा है।

नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं ।

मकान के नीचे एक बैंक खुली है जिस पर एस_बी_आई लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सामने बहुत सारी कार मोटरसाइकिल रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

घंबे लगे हुए दिखाई दे रही है।

यह एक दुकान बनी हुई दिखाई दे रही है जिसके ऊपर --

रोड पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है सीढ़ी बनी हुई दिखाई दे रही है।

और चैनल लगा हुआ दिखाई दे रहा --

साइड में एक बड़ा-सा पत्थर रखा हुआ दिखाई दे रहा है ।

फ्रेंच के सामान से लड़कियां कुछ बनाते हुए दिखाई दे रही है एक टीचर खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो --

जिसमें एक कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है बाहर बहुत सारी माइक लगी हुई दिखाई दे रही है।

आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे --

एक स्टेडियम दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस पर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम --

राजनंदगांव छत्तीसगढ़ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है गेट खुला दिखाई दे रहा है एक स्कूटी रखी हुई दिखाई दे रही है।

दुकान के अंदर सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है गुप्पारी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है मकान के नीचे कुछ दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं।

पास में एक मकान दिखाई दे रहा है अ शाम का समय दिखाई दे रहा है।

को सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है दीवार पर घड़ी लगी हुई दिखाई दे रही है।

जिस पर नूपुर रूफ टॉप पार्टी जोइंट रेस्टोरेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ।

एक कॉलेज दिखाई दे रहा है जिसके बाहर दो साइकिल रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

मैदान में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आसपास पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक मोटरसाइकिल रखी हुई दिखाई दे रही है सामने एक मकान --

चबूतरा बना दिखाई दे रहा है चबूतरे पर रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

बिजली के खम्मे दिखाई दे रहे हैं।

एक बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं एक खम्मा लगा हुआ दिखाई दे रहा --

यह एक कर रखी हुई दिखाई दे रही है कार के पास एक सोफा डला हुआ दिखाई दे रहा है सोफा के पास एक टेबल कुर्सी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं दुकानों के ऊपर बोर्ड लगे हैं जिस पर निर्मल --

साइड मैं कुछ खिड़कियां बनी हुई दिखाई दे रही है इ सामने दिवार पर एक पोस्टर चिपका हुआ दिखाई दे रहा है।

एक कंप्यूटर रखा हुआ दिखाई दे रहा है जमीन पर एक पनी डली हुई दिखाई दे रही है।

जिस पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं लाइट चलती हुई दिखाई दे रही है।

सामने जमीन पर कुछ कपड़े से ढका हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है सड़क के पर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे --

डलता हुआ दिखाई दे रहा है ऑटो पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ मोटर साइकिल दिखाई दे रही है आस-पास पेड़--